कुछ बाइक ऑटो ओ भी जाते हुए नजर आ रहे हैं।

एक दो मंजिला मकान है जिसपे पूरे पे ग्रीन कलर किया गया है ऊपर दो खिड़की है।

नीचे दो गेट नजर आ रहे हैं जिसमें लोहे के ग्रिल लगाए गए हैं।

उसके बीच वाली फ्लोर में चारों तरफ मिरर दिया गया है जिसके अंदर बहुत सारे कपड़े सूट लहंगे साड़ियां पुतले को पहनाया गया है।

नीचे के फ्लोर में आने के लिए एक गेट है बड़ा सा जिसपे एक व्यक्ति खड़ा है ऑरेंज टी शर्ट में।

यहां पे बहुत सारे लोग खड़े हैं बाहर लोहे से एक रेलिंग किया गया है।

इस दृश्य में दिखाई दे रहा है यह एक हार्डवेयर शॉप है जिसमें की बहुत सारी बोरियों में सीमेंट रखा गया है जो कि येलो कलर और ग्रे कलर में है उसका पैकेट ।

के पीछे पंडाल बनाया गया है जिसमें कि बहुत रंग बिरंगे तरह का फ्लावर से डेकोरेशन किया गया है।

इस दृश्य में दिखाया गया यह एक जिम है जिसमे बहुत सी मशीनें रखी गई हैं जो कि ब्लैक कलर में हैं।

इस दृश्य में दिखाया गया यह एक शॉप है जिसमें कि बहुत सारे बेसिन और सारे टॉयलेट और कमोड रखे हुए हैं।

कैमरे नजर आ रहें एक घड़ी नजर आ रहा एक पंखा नजर आ रहा है।

एक व्यक्ति खड़ा है जिसने व्हाइट कलर का शर्ट और ब्लैक पैंट और ब्लैक स्लीपर पहना हुआ है ऊपर बहुत से लाइट लगे हुए हैं।

एक वाइट कलर की मैजिक गाड़ी खड़ी हुई है पास में बहुत सारे घर हैं जोकि एक मंजिला है।

इस दृश्य में दिखाई दे रहा है यह एक घाट है जिसमें बड़ा सा मंदिर है।